बड़ा सा गार्डन दिख रहा है नीचे--

आजू-बाजू हरी भरी घास उठी हुई हैं।

बड़े बड़े डी_जे यहाँ पे गाड़ी में लेके जा रहे हैं।

यहां सामने बहोत सारे पौधे हैं बड़े बड़े यहां पे झाड़ा भी है।

चेयर्स भी रखी हुई है बाजू में यहाँ पे दो फ्रिज और यहाँ पे बहोत सारे --

रखा लाला गया है पीछे यहाँ पर कुछ --

टेबल्स भी है बैठने के लिए यहां पे।

अंदर यहां पे बहोत सारे लाइटिंग के लडान छोड़े गए फेना भी--

ये कारों में टू व्हीलर में काम आने के छोटे छोटे पाने टाइप दिख रहे--

आजू बाजू यहां पे बहोत सारे दुकानें भी लगी हुई है और वहां पे कु--

नीचे यहां पे बहोत सारी हरी भरी घास है पौधे उठे हुए हैं।

कैमिकल्स से रखे हुए हैं बाजू में भी एक यहां पे वाटर बॉटल भी है यहां पे अंदर एक--

आदमी भी दिख रहा है ऊपर सेना एल_ई_डी लाइट्स भी है।

और यहाँ नीचे बहुत सारी भैंसा भैंसा के बच्चे भी दिख रहे हैं बाजू में यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे --

बहोोोत सारी दुकानें लगी हुई है।

बाजू यहाँ पे थैले रखे हुए --

ये एक यहाँ पे बड़ााा सा जिम दिख रहा है।